ताकि पीछे की तरफ इंसान गिरे ना। आगे की तरफ पहाड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। जहाँ पर बहोत सारी घासे हैं। यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है जिसपे लाइट लटक रही है और ऊपर की तरफ आसमान दिख --

और सामने की तरफ एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि कोई स्कूल या फिर कॉलेज है।

सामने की तरफ कंप्यूटर रखा हुआ है और वो बंदा कंप्यूटर चला रहा है। सामने की तरफ बोतल रखा हुआ है।

भी मतलब बहोत सारे छोटे बच्चों के खेलने वाले साइकिल --

और ये कोई साधु या संत टाइप के लग रहे हैं।

और यहाँ पर कुछ खम्भे हरे-हरे से खड़े हुए हैं। यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ की छांव है।

और सामने की तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं उसमें लाइटें वाइट कलर की दिखाई दे रहीं हैं जोकि जल रहीं हैं।

रंग बिरंगी चीजे रखी हुई डेस्क के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फूल दिखाई दे रहे हैं। गुलदस्ता दिखाई दे रहा है। फ्लॉवर पोट --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

यहाँ पर एक मूर्ति खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो कि बना के खड़ा कराई गई है। ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है।